इस चित्र में एक बड़ा सा स्विमिंग पुल दिखाया गया है। इस स्विमिंग पुल के आस पास बोहोत सारे --

इस चित्र में एक स्टेज बना हुआ है और स्टेज में तीन लोग हैं जिसमें एक पुरुष है दो महिला हैं।

और आस-पास बिल्डिंगें भी हैं और सड़क बहोत ही साफ़ है और यहाँ पर जगह भी है बैठने --

समसंग ओप्पो मोबाइल की है जिसके आगे बोहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं। बोहोत सारे लोग --

उगे हुए हैं और बीच में जमीन को प्लेन किया गया है और वाइट रंग से डिज़ाइन बनाया गया है।

इस चित्र में बहोत बड़ा ही पर्वत-पहाड़ दिखाया गया है और उस पर्वत-पहाड़ के आस-पास बहोत सारे पेड़-पौधे --

यह एक फ़ोन की दुकान है जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी क्लासिकल ऑल।

और दीवालों पर बड़े-बड़े विद्वान के फोटो टंगे हुए हैं और कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।